इस फोटो में हम देख पा रहे हैं कि कई सारी घास लगी हुई फसल लगी हुई है।

ऐसा लग रहा है की फसल को पानी दिया जा रहा है।

यहां हम देख पा रहे हैं कि दो आदमी खड़े हैं जोकि एक कैमरे नुमा मशीन में झांक रहे हैं।

और एक दूसरे वाले आदमी ने एक अपने हाथ में कॉपी ले रखी है।

दोनों ने हरे कलर की जैकेट पहन रखी है और सफेद कलर की टोपी लगा रखी है।

जैसे कि हम इस फोटो पे देख पा रहे हैं एक रूम है जिसमें की अलमारी लगी हुई है।

छत दिखाई दे रहे हैं छत पे कई तरह के डिजाइन बने हुए हैं।

और कई तरह की डेकोरेशन हो रखी है ऐसा लग रहा है कि किसी शादी की जयमाला की तैयारी हो रही है।

जैसे की हम फोटो में देख पा रहे हैं।

एक बैग रखा हुआ है और एक बिजली का बोर्ड भी दिखाई दे रहा है।

एक औरत एक दीवार पर बैठकर पारात में कुछ कर रही है।

इस फोटो में हम देख पा रहे है कि ये एक प्लॉट या खेत जैसा दिखाई दे रहा है।

एक आदमी ने ब्राउन कलर की शर्ट और पैंट पहनी हुई है और एक आदमी ने वाइट कलर की टी शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी हुई है।

उसके नीचे एक और बैनर लगा हुआ है जिसपे भी लिखा है दीप पंजाबी ढाबा और प्योर वेजिटेबल --

जो की एक गाड़ी के नीचे घुसकर उसकी उसको सही कर रहा--

और गाड़ी की नंबर प्लेट हमें दिख रही है जिसका नंबर है यू_पी उन्नीस सी वन वन फोर फोर वन ।

और दूसरे टंकी पर लिखा है डेलफिश लेयर ।

की तीन शेल्फ में अलग अलग तरह के ब्यूटी प्रोडक्ट्स रखे हुए है।

जैसे कि हम नीचे वाली शेल्फ में देख पा रहे हैं कि पतंजलि के फेस वॉश रखे हुए हैं निविया के फेस वॉश रखे हैं।

कुछ शेल्फ में आप देख पा रहे हैं कि डाबर आंवले के तेल रखे हुए हैं।

और तीसरे शेल्फ मे आप देख पा रहे हैं कि जैम और आचार रखे हुए हैं और नेसकैफे की कॉफी भी रखी हुई है।

और सेकंड फर्स्ट फ्लोर पे चार पांच आदमी खड़े हुए हैं।

इस फोटो जने की हम देख पा रहे है कि एक ग्राउंड है।

कुछ औरते नीचे खड़ी है और कुछ औरते बैठी हुई है।

और उसके नीचे लिखा हुआ है लाल जी मोबाइल गैलरी ।

और सभी औरतें एक ही तरह का योगा दिखाई देती पड़ रही है।

जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि ये बहोत बड़ा हॉल है।

ट्रैक्टर जिसकी इंजन निकाल के बाहर रखा हुआ है कई सारे ट्रैक्टर सही करने के औजार रखें हुए हैं।

कई तरह की उन्होंने अलग अलग तरह के कपड़े पहने हुए हैं।

इनमें से एक गाड़ी की कंपनी का नाम हुंडाई है।

गुब्बारों का रंग सफेद नीला सफेद पिंक और व्हाइट दिखाई दे रहा है।

और कई सारी मेज भी रखी हुई है और कुर्सियां रखी हुई है।

दूसरी औरत ने नीले कलर की साड़ी पहनी हुई है।

और तीसरी औरत ने काले कलर की साड़ी पहनी हुई हैं।

बीच में एक क्रिकेट खेलने वाली पिच भी दिखाई दे रही है।

और उसमें कई सारे पेड़ खड़े हैं।

और दो तीन कुर्सी दीवाल से पड़ी हुई रखी भी हुई है।

ये किसी फैक्ट्री लग रही है जिसमें की बहोत बड़ी एक मशीन रखी हुई है।

और पीछे एक लाल कलर की मशीन दिखाई दे रही है।

इस फोटो में हम देख पा रहे हैं कि एक आदमी एक मशीन को धक्का लगा रहा है या उसे खींच रहा है।

और ये चौखटे भी ब्राउन कलर की हैं।

जो कि वेगन आर ब्रांड की दिखाई पड़ रही है।

उसने व्हाइट कलर की शर्ट पहनी हुई है नीले कलर की जींस पहनी हुई है उसके बराबर में किराना दुकान भी दे रही है जिसके में बहोत सारे कुरकुरे के पैकेट टंग रहे हैं।